यह एक ड्राई क्लीनर्स की शॉप है जहाँ पे ड्राई क्लीन की जाती है एक आदमी अपने हाथ में सफेद शर्ट लिए कही जा रहा है।

यह एक लाइब्रेरी शॉप है जहाँ पे एक अंकल खड़े है जिन जो वाइट कलर की त शर्ट पेहने है वाइट और ब्लू कलर की उनके हाथ में एक बुक है।

खड़े हैं और लकड़िया रखी हुई है कुछ लोग इस कस्ती को चला रहै हैं कुछ खड़े --

यह एक दाढ़ी कटिंग करने वाली दुकान है जहां पे एक लड़के की कटिंग बना रहा है एक नाई।

यह एक जिम की तस्वीर है एक लड़का बैठा हुआ है उसने पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है केमरे की तरफ देख रहा है सेल्फी ले रहा है।

यह एक स्टेशनरी है जहां पे छोटी सी एक दुकान है जो ब्लू कलर का शटर लगा हुआ है एक काउंटर रखा है जो ब्राउन कलर का है सिडाउ बनी हुई है और ईट की दीवाले बनी है।

यह एक बैंक है जहाँ पे गार्ड खड़ा है बाहर जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहन के रखे हैं चैनल गेट है जो आधा लगा हुआ है।